एक मार्केट है मार्केट मे बहुत सारे लोग जा रहे है और आ रहे है बगल मे बहुत सारे दुकाने है और एक आदमी है जो की सामने की और है वो टोपी लगाया हुआ है और चहरे मे चश्मा लगाया हुआ है।

एक बीच में खंबा है जो की बहुत ऊंचा है उसमें बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई है और यह खंबा बहुत पुराना है।

सामने दो लड़की है जो की सामने की और देख के हास रहे है सामने वाले लड़की के हात मे मोबाईल राखी हुई है काले कलर की।

उसमे काले कलर का बोर्ड लगा हुआ है और सामने बोहत सारे लड़के लोग है जो की चश्मा लगाए कुछ चश्मा नही लगाए है सभी रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए है।

पीछे एक पूल है जिसमे पानी भरा हुआ है पूल के ऊपर से रस्ता बना हुआ है पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे है जो की हरे भरे है।